सामने एक गुलाबी रंग का घर दिखाई दे रहा है।

उस घर में बोहोत सारी खिड़कियां बनी हुई हैं।

उसने सफ़ेद रंग की शर्ट पहन राखी है।

यहाँ बहोत भीड़ लगी हुई है। बहोत सारे आदमी खड़े हैं।

तब खड़े होके नाच रहे हैं। बहोत भीड़ लगी हुई है।